हम बैठे हुए है मंदिर के बाहर।

सजाया गया है और बहुत अच्छा डेकोरेट गए है और बहुत अच्छे पैंडल को डेकोरेट गया है जैसे लग रहा है किसका सदी विवाह का हैं।

उधर से भी घड़ी आ गई है ना दुकाने भी लगायी गई है बहुत अच्छे तरह देखने में बैठे हैं।